ईमारत थोड़ी जर जर तथा पुरानी है यह हल्की ग्रे और लाल रंग में दिखाई पड़ती है।

उठाया हुआ है यहाँ पर एक और आदमी है जिसमें सफेद कलर के बनियान पहनी है।

जिस पर सफेद और पीले रंग से लिखा हुआ है कारपेट का रंग हरा है दिवार का रंग सफेद है।

यहाँ पर जमीन का कलर क्रीम है तथा यह जिस पत्ते पर रखे उसका कलर भूरा है।

जैसा कि मैं देख पा रहा हूं मुझे यहाँ पर मुझे खूब हरियाली दिखाई दे रही है यहाँ पर पेड़ों का रंग आ रहा है यहाँ पर पाइप का रंग पीला है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक आदमी है जो कपड़ों को स्त्री कर रहा है आर्मी ने मिलिट्री की --

मिलिट्री की टी शर्ट पहनी हुई है यहाँ पर दीवार का रंग पीला है दीवार पर घड़ी है जिसका रंग पीला है।

की सफेद रंग का है दीवार का रंग पीला और लाल है माता जी ने आसमानी और पिले रंग की --

माला पहनी है यहाँ पे एक गुम्मद है जिसका रंग लाल है।

आना है किसी ने लोग दिखाई दे रहे है जिन्होंने रंग-बिरंगेपेन रखे है जमीन का कलर काला है तथा यहाँं पर--

यहाँ पर एक क्रेट रखी है जिसका रंग पीला है उस पर मछली रखी है मछली का रंग सफेद है यहाँ पर दो आदमी तथा एक लड़की --

बड़े-बड़े पेड़ है पेड़ों का रंग हरा है यहाँ पर कुछ व्यक्ति क्रिकेट खेल रहे है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यहाँ पर मुझे तीन लोग दिखाई देते हैं जो व्यायाम की मुद्रा मे हैं।

यहाँं पर सामने रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए है एक औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी है।

जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ मुझे यह इमारत दिखाई देती है पुरानी इमारत है जो कि पुराने जमाने की है।

जमीन का रंग ग्रे कलर का हैएक बाइक खड़ी है बाइक का रंग काला है।

यहाँ पर कुछ लोग नहीं दिखते हैं यहाँ पर सुनशान इलाका दिखाई दे रहा है।

यहाँ का रंग काला दिखाई दे रहा है मशीन भी काली दिखाई दे रहै है जमीन का रंग थोड़ा कला और--